और बहोत सी खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

इसमें कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और कुछ गेट भी।

और आस पास सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है इस दुकान में कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

और सामने एक दीवाल पर मीटर दिखाई दे रहा है।

और कुछ मेजें भी रखी हुई हैं।

और कुछ हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और सामने एक औरत दिखाई दे रही है।